कुछ दुकान लगाए हुए हैं। कुछ व्यक्ति और कुछ बाइक नजर आ रही हैं। बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह नाव है। नाव में एक व्यक्ति नाव चलाते हुए दो तीन व्यक्ति नाव में बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति नाव चलाते हुए नजर आ रहा है।